इस फोटो में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिख रहा--

इस फोटो मे मुझे कच्ची रोड दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे पेड़ नजर आ रही हैं।

फोटो में बहोत सारी अलमारियां लगी हुई है।

इस फोटो में मुझे मिठाई की--

इस दुकान में कोकोकोला की फ्रीज नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे व्यूव नजर आ--

इस फोटो में मुझे ए--

लेडिस नजर आ रही है इस फोटो में मुझे एक--

इस फोटो में मुझे कुछ बच्चे नजर आ रहें हैं।

इस फोटो में मुझे लड़का नजर आ रहा है।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

फोटो में मैरिज गार्डन नजर आ रहा है इस--

इस फोटो में मुझे लाइटिंग दिख रही हैं।

जिम नजर आ रही है इस फोटो में मुझे हॉल नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे बॉटल नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे पार्लर नजर आ रहा है इस फोटो में--

घोड़ा नजर आ रहा है इस--

आ रही हैं इस फोटो में मुझे लाईट नजर--

डीजल का वो दिख रहा है इस फोटो में मुझे पंप नजर आ रहे--

इस फोटो में मुझे लाइटिंग नजर आ रही है।